इस चित्र में मुझे बहुत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है। एवं पंखे इसमें मुझे एक आदमी स्टुल पे बैठा हुआ नज़र आ रहा--

तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है यह किसी यह किसी सरकारी संस्था की तस्वीर है। जिसमें मुझे कुछ टेबले दिखाई दे रही है तथा एक टेबल काले कलर की दिखाई रही है।

मुझे इस चित्र में सरस्वती माँ की मूर्ति नजर आ रही है जिन्होंने गोल्डन कलर की वीणा रखी हुई है तथा इसमें मुझे बहुत सारी पूजन की सामग्री लोटा नजर आ रहा है।

मुझे दिखाई दे रहा है की यह किसी सामुदर के किनारे की तस्वीर है जिसमें बोहत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है तथा कुछ गाड़ियां चल रही है।

एवं मुझे इसमें एक जाली दिखाई दे रहा है जिसके उधर हिरने खड़ी हुई हैं इसमें मुझे पाइपे भी दिखाई दे रही है।

मुझे भगवान जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है जो की काले कलर की है तथा गोल्डन कलर की है इस चित्र में मुझे उनके सिर पर गुम्बद नजर आ रहा है।